पास में एक टेम्पु भीं खड़ा हुवा हैं यहाँ पर बहोत सारे पेड़ भीं लगे हुए हैं।

ये तस्वीर एक रेत के इलाके की है यहां पर बहोत चौड़ी रेत की सड़क है।

और यहां पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

एक आदमी भी इसके पास बैठा है।

ये तस्वीर खाने के सामान की है।

ये तस्वीर एक सड़क की है इस पर से कई मोटरसइकल --

ये तस्वीर एक एक्सरे लैब की है।

कारों की है यहां पर सफेद रंग की कार खड़ी है और--

ये तस्वीर बहुत बड़े तालाब की है।

यहां पर एक पूल भी दिखाई दे रहा है।

और समुंदर के किनारे बहुत सारा--

ये तस्वीर एक दरवाजे की है ये दरवाजा काफी नया और बड़ा है।

बहोत बड़ा टेंट लगा हुआ है और बहोत सारी लाइटे भी--

फूलों की मालाओं से उन्हें सजाया गया है।

पाइप भी नजर आ रहा है।

छत पर पंखा लगा हुआ हैं।

यहां की दीवारें हल्के पीले रंग की हैं।

ये तस्वीर एक पुरानी दुकान की है।

कई औरतें दिखाई दे रही है।